और पर नीचे की तरफ दो शेर बने हुए हैं पीले रंग के और यहाँ पर।

और प्लेट मैं पुलाव है कुछ और यहाँ पर गाजर अ मूली के टुकड़े हैं।

और उसके ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है लाइट अन्दर की तरफ जल रही हैं और दरवाज़ा अंदर की तरफ लगा हुआ हैं जाली लगी है।

यहाँ पर बहुत बड़ा-सा बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर न्यू संध्या --

सफ़ेद रंग का बॉक्स रख --

खंबा लगा हुआ है तारे हैं और बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पर।

सॉकेट लगा हुआ है रोड लगी हुवी है एक सफ़ेद रंग की और एक खिड़की बानी हुई हैं।

गुलाबीसफ़ेदहरे रंग के हैं और लाइट चल रही हैं अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ कुछ तीन बोतल रक्खी हुई हैं।

ओ ईटें रखें हैं बाहार की तरफ सरिया लगा हुआ हैं पीछे की तरफ एक सफ़ेद रंग की ईमारत दिख रही जिसमें खिड़की हैं।

यहाँ सामने की तरफ सड़क पर बाइक खड़ी हुई है यम --

पूल के ऊपर ये खड़ा हुआ है और नीचे की तरफ नदी है बड़ी और किनारे की तरफ कुछ बिल्डिंग्स और पा --

लाल रंग के हैं हरे रंग के हैं एक स्टूल रखा हुआ है बोरियां रखी हुई हैं।

और दीवालों पर यहाँ पर सरमाइका लगा हुआ हैं और ऊपर की तरफ लाइट्स लगी हुई हैं टीवी रखी हुई हैं।

कृष्णा फोटो सर्विस स्टेशनर लिखा हुआ है और बगल मैं दरवाज़ा लगा हुआ है जो की बंध है।

और आलू प्याज रखी हुई हैं केले टंगे हुए हैं और बहुत सारे चिप्स --

कंबल रखा हुआ है चदर बिछा हुआ है परदा हैं खिड़की हैं खिड़की पर परदा लगा हुआ है दिवार पर सफ़ेद रंग का --

ऊपर एक कार खड़ी हुई है कार पर नंबर लिखा हुआ है एट फोर थ्री ट्रिपल नाइन ट्रिपल थ्री दून लिखा हुआ है पीछे की तरफ भी --

यहां एक ट्रेक्टर खड़ा हुआ हैं सामने की तरफ एक व्यक्ति बैठा हुआ हैं सफ़ेद रंग के कपडे पेहन कर पीछे की तरफ --

ब-बेकर्स लिखा हैं और यहाँ पर अंदर की तरफ क लड़ियाँ लगी हुई हैं।